यह एक बहोत ही बड़ा यहां घर है और इस घर के आगे एक छोटा सा मंदिल है।

सरकारी पानी पीने वाली नल।

और ऊपर से कुछ लाइटों की प्रकाश ह चमक रही हैं।

यहां सड़क पे बहुत सारे मार्केट लगे हुए हैं।

और यहां पे कुछ टेबल और कुर्सियां भी लगी हुई है।

और यहां पे कुछ अह बड़े बड़े पिलरे हैं और इस छत को अह जो छड़ों से--

और यहां बीचोबीच अ एक बड़ा सा पाइप में लहरता हुआ झंडे को अ रखा गया है।

और बीच में एक मेन गेट बना हुआ है जोकि पूरा लेह लोहे के पिलर से--